ये एक बच्चे बैठे हुए है एक फटटी पे और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे है एक सर पढ़ा रहे है ।

ये एक अ अ अंकल खड़े हुए है ब्लू टी शर्ट पहन के एंड यहाँ पे एक पलंग पे--

एंड स्ट्रॉबेरी रखी हुई है यहाँ पर डेकोरेशन बहुत ही अच्छा है एंड बहुत क्लीन स्टोर हैं।

एक और ऊपर भी टंगी हुई है एंड यहाँ पर कैमरास भी लगे हुए है।

-- है इसमें और ये शॉप तमिल की है और यहाँ पे एक अंकल खड़े हुए है येलो टी-शर्ट --

और ए. पी. जे अब्दुल कलाम की यहाँ पे --